और एक रोड है जिस पर एक बाइक लगा हुआ है अगल-बगल घर है ऊपर एक लाइट है।

आदमी क्या टी-शर्ट दिख रहा है।

अगल-बगल और आदमी देख रहे हैं।

और सामने एक आदमी है नीचे सामान रखे हुए हैं।

और ऊपर पेड़ भी है।

इस तस्वीर में एक सामने गेट है गेट के ऊपर कुछ तस्वीरें हैं।

अगल-बगल गमले हैं जिस गमले में छोटे-छोटे पौधे हैं और ऊपर आसमान है।

अगल-बगल पर्दा लगा हुआ है पर्दे का कलर काला है।

इस तस्वीर में एक घर हैजो वाइट कलर का है अगल-बगल पेड़-पौधे हैंऔर छोटे-छोटे पौधे हैं सामने एक--

एक घर है जिस घर के बाहर दो गाड़ियाँ हैं वाइट कलर का--

एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप है।

अगल-बगल घर हैं दो-तीन गाड़ियाँ हैं जिस पर तीन-चार आदमी बैठे हैं और दो-तीन आदमी खा रहे हैं।

फोटो है दो-चार और--

एक आदमी है जो गार्ड है अगल-बगल घर है कमरे हैं कमरे में ढेर सारे सामान हैं।

एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक पानी है।

अगल-बगल सीढ़ी है इस सीढ़े पर लाइट बढ़ रहा है और दो-चार लड़के हैं।

एक तस्वीर है इस तस्वीर में एक घर है।

और लड़की और लड़के हैं जो व्यायाम कर रहे हैं ऊपर लाइट बढ़ रहे हैं एक सामने लड़का खड़ा है।

और चारों तरफ हर है।

और कुछ लिखे हुए हैं और नीचे रोड है रोड पर--

एक सामान दिख रहा है जिस सामान के सामने एक देवाल है और देवाल पर कुछ लिखा हुआ है।

एक शर्ट है शर्ट को टांगा हुआ है सामने बोर्ड है।

और ऊपर आकाश है जो कलर वाइट है अगल-बगल घर है फील्ड में हरे भरे घास है।

वाइट अगल-बगल लाइटें लगे हैं कुछ पैरे हैं।

और नीचे घास है हरे भरे--

घर को सजाया गया है और ऊपर आकाश है जिसका कलर वाइट है अगल-बगल--

एक दो गाड़ियाँ हैं एक साइकिल है सामने एक आदमी है और एक चार-छ का गाड़ियाँ हैं।

एक चक्का है और गाड़ी का कलर ब्लैक है कुछ पत्थरे हैं अगल-बगल सब सामान हैं।

कुछ सामान नीचे भी धरे हुए हैं ऊपर आकाश है जिसका कलर ब्लू है।

अंदर में कलसा है और उस पर लाइट बढ़ रहा है अगल-बगल डेक्स है डेक्स पर सामान रखा गया एक लाइटम है।

सामने एक रोड है जिस रोड पर एक ठेला है।

ठेले के बगल एक आदमी अगल-बगल बाइक है।

जिस घर के सामने एक गेट है उसके बगल में दो आदमी हैं।

और सामने एक पेड़ है बगल में एक पोल है ऊपर आकाश है जो नीले कलर का है अगल-बगल घर है।

एक मैरेज हॉल है इस मैरेज हॉल में वाइट कलर का सोफा लगा हुआ है।

कपड़ा धरा हुआ है कुछ ईंटा-उंटा धरा हुआ है।

लड़का है जो ढेर सारा--

और नीचे हरा मैट बिछाया हुआ है।

दो तीन और बेड है।

अगल-बगल पेड़-पौधे हैं छोटे-छोटे पौधे हैं ऊपर आकाश है अगल-बगल घर हैं।

कुछ बड़े-बड़े बिल्डिंग है ऊपर आकाश है उसका कलर नीला है।

सामने एक रोड हैरोड के अगर बगर घास है।

एक घर है इस घर में तीन चार औरत है एक दो मर्दाना है जो व्यायाम कर रहे हैं।

एक घर है इस घर में एक प्लेट है प्लेट में कुछ --

इस घर में तीन चार खिरकीए हैं शीशे का--

रोड है ऊपर आकाश है आकाश नीला है।

जो सामान टांगे हुए हैं एक एसी भी है।

और ऊपर लाइट भी बर रहा है।

अगल-बगल सामान रखे हुए हैं।

सामने एक घर है घर में दो-तीन आदमी हैं एक हरे कलर का--

आदमी है जो बैठे हुए हैं कुछ टेबल कुर्सी भी है एक लाइट है।

सामने एक घर है घर पर--

आदमी और खड़े हैं अगल-बगल सामान है।

सामने एक घर है घर में नीचे कुछ दुकान है दुकान में कुछ सामान रखे हुए हैं।

कुछ रोड पर भी सामान्य पर आकाश अगल-बगल घर है।

एक घर है जिस घर में दो-तीन आदमी हैं जो व्यायाम कर रहे हैं।

और बॉल है एक एशिया है कुछ लड़के जिम कर रहे हैं।